इ एक छोटा बालिकों की कक्षा कु दृश्य छ जख्मु कक्षा का भीतर टेबल एवं कुर्सी छन लगीं ग्रे रंग की ।

उ सीमेंट का या कुछ खाद खदान का कट्टा गाडी म लोड

जींकी काफी सुंदर सुंदरी साड़ी छे पैनी अर एक तरह को डांस शो कन लगीं वींका पिछने बिटिन काफी बड़ो पोस्टर भी छ लग्युं।